तडाई वडाईन तोमते यहा पे तेवहार हो न--

मेम ने लाल साडी पहनी हुई है और तेवार ऊपर चल-चल--